अ दिखाई दे रही है जो सारी पहनी हुई है और यहाँ पे लाइट भी चमक रहा है यह बरा सा ग्र-ग्रे गेट में यहाँ पे बड़ी सी ग्रिल भी लगी हुई है यह गेट का रंग यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है।